यहीं से ले जाते हैं। लोग काफ़ी यहाँ आते हैं और रहने का आसन यहीं से ले जाते हैं।

इनका सिस्टम बहुत अच्छा है। वन नाईट में अपना ये सारी यात्रायें पूरी करती हैं और इनका सर्विस बहुत ही सुंदर है।

पहाड़ से थोड़ा पानी जो बारिश का होता है इस रिजर्वायर में आ जाता है जिसका उपयोग लोग पूरे समय करते हैं।

बच्चे खेलते हैं तो उनका शारीरिक और बौधिक विकाश दोनों होता है। केवल पढने से हाय-हाय करने से कुछ नहीं होता है। पढाई तो एक तरीका है।